जो मंदिर मंदिर के ऊपर पीला गुम्मट है।

ये पिक्चर में एक रोड दिखाई दे रहा है।

और उसने हाथ जोड़े हुए है।

और एक खेर दिख रही है।